वहां पे एक ग्रीन कलर का शर्ट ब्लू जीन्स पहने लड़का है।

नदी में कुछ उजली और काली मछलियाँ तैर रही हैं।

लक्ष्य इंटरनेशनल अकादमी ए --

सामने एक घर है घर को सजाया गया है|

नदी के ऊपर नाव है।